और बहोत अच्छे से सेज डेकोरेट हो।

जो गेम पुल गेम खेल रहा है।

बोर्ड लगा हैं नर्सरी का --

सामने एक जीप खड़ी है ब्लैक कलर की।

और एक आदमी जा रहा है बाइक पे --

और यहाँ एक पहाड़ बना है।

और यहाँ पे एक पाइप रखा है रेड कलर का --

ब्राउन शर्ट में और ब्लैक पैंट में--

और एक आदमी बैठा है।

पिक्चर बनी है।

सामने एक पिक्चर बनी है।

सामने एक पिक्चर बनी है।

ये एक मेले का है दो हजार उन्नीस का --

जिस पर नर्सिंग पार्यटन केंद्र लिखा है।

पुल बना है पुल पर एक आदमी खड़ा है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमे एक --

और बेडशीट बिछी है वाइट और ग्रीन कलर की --

एक बोर्ड लगा ऐ जय माता का --

बोर्ड लगा है पार्किंग का --

और यहाँ पे कोई भी नहीं है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक --

अलमारी बनी है जिसमें बहोत से सिरप और बॉक्स रखे है दवाई के।

फिडरल बैंक ए_टी_एम का एक आदमी खड़ा है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक --

येलो और ग्रे कलर की है।

रोड दिख रहा है जहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ जा रही हैं ।

सामने बहुत से डिअर हैं।

शोरूम दिख रहा है कपड़ों का --

औरत बैठी है जो फोटो खिचवा रही है।

सामने एक पिक्चर बनी है जिसमें एक मस्जिद दिख रही है।

सामने एक मस्जिद बनी है ग्रीन और वाइट कलर की एक आदमी खड़ा है।

पिक्चर दिख रही हैं जिसमें एक रोड दिख रहा है।